एक दुकान दिखाई दे रही हैं जहाँ अलग-अलग खानों में अलग-अलग तरीके का सामान रखा हुआ हैं।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ी- सी बैंक दिखाई दे रही है जहाँ सामने की ओर एक शटर भी दिखाई दे रहा है बाहर की ओर और अंदर की ओर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं एक बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ हैं।

यहाँ सामने की ओर एक दुकान दिखाई दे रही हैजहाँ नीचे की ओर केले संतरे और पत्तागोभी दिखाई दे रहा है। सामने की ओर एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यहाँ सामने की ओर एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज पर कई व्यक्ति--

वहाॅ पर खड़े हुए है एक स्टार भी एक व्यक्ति के पीछे की ओर लगा हुआ है कई फुग्गे भी दिखाई दे रहे हैं।